उसमें सुनहरी रंग के दो गुंवत हैं।

बिजली के बड़े-बड़े तार भी हैं।

एक सफेद रंग की गाड़ी जा रही हैं।

और काफी बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

जिस पे बहुत सारे लोग हैं।

और कुछ कुर्सियां भी रखी हुईं हैं।

लाल रंग की एक कुर्सी रखी हुई हैं।

दिवाल पर गुलाबी और हरा रंग किया हुआ है।

यहाँ तस्वीर में काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

जिस पे एक आदमी सामान लेकर जा रहा है।

एक खाने का कुछ सामान रखा हुआ हैं।

और बहुत अच्छी लाइटें लगी हैं।

उस मैदान की जमीन पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

उसके आसपास हरी घास का मैदान है।

और कुछ घर बने हुए हैं।

जहाँ पर एक लकड़ी का काउंटर रखा हैं।

दीवार पर एक टी_वी लगी है और कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं।

जिस पर एक साइकिल खड़ी हुई है।

जिसमें काफी रंगीन साड़ियां लगी हुई हैं।

जिस पर लोहे का पाइप लगा हुआ है।

और बड़ी बड़ी इमारतें बनी है।

यहां पर एक सफेद रंग का--

यह एक घास का और मिट्टी का बड़ा सारा मैदान है।

इस तस्वीर में एक प्लेट रखी है।

इस तस्वीर में एक मिट्टी के ऊपर--

ये तस्वीर एक कक्षा की है।

एक आदमी मिट्टी के चबूतरे पर खड़ा हुआ है।

उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।